यहाँ पर सिढियाँ दिखाई गयी है जिसमे दोनों साइड लोहे की ग्रील लगी हुई है।

यहाँ एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है।

गोबी है फूल गोबी टमाटर गाजर खीरे यहाँ पे सभी तरह की सब्जियाँ हरी मिर्ची दि-दिखा रखी हैं।

यहाँ पे बहुत तरह के गेम्स दिखाए जा रहे हैं जिसमे टॉयज रखे हैं बॉल भी हैं।

यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक पानी कि बोटल है।

और गले में उसके ब्लूतूथ है।

सुंदर से सजाई गई है साथ में ये सी_एन_जी --

और साथ में एक बेनर भी लगा है सोल्यूशन टू पोल्यूशन --

और यहाँ पे दीवार पे रेड कलर की लाइनिंग डाली हुई है बॉर्डर साथ में शीशे की बिल्डिंगस बनी हुई है।

और ये है कोई एक रेस्टोरेंट दिख रहा है यहां पे चेयर टेबल है साथ में कुछ भैया बना भी रही हैं।

यहाँ एक डेकोरेट एक घर है जिसके ऊपर--

और लाईट भी है सन सन कि रौशनी अच्छी खासी है।

यहाँ पे कुछ लेडिज बच्चे साथ में खड़े हुए है गाड़ी आ रही है।

कहीं जाने कि तैयारी हो रही है कोई एक ऑटो से बात कर रहे हैं।

यहाँ पे हरयाली है फूल हैं।

यहाँ पे घर हें झूले हें बड़े बड़े पेड़ साइड से दे रखे हें बेंच भी पड़ी हुई हें और एक व्यक्ति यहा घूम रहा हे।

कुछ सामान भी रखे हुए है यहाँ पे दो स्टोर है बेठने के लिए रेड कलर कि--

और यहाँ पे फ़ोनपे स्कैनर कि लोगो लोगो--

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पर बहोत सारी गाड़ियाँ वाईट कलर कि खड़ी हैं।

अब कुछ यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं बाते कर रहे है।

और साथ में यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ समान भी रखी है हैंगगिंग हैं कुछ चिप्स के पैकेट रैपर्स --

और ड्रम रखे है जिसमें पानी भी है और साथ में कुछ बर्तन वगेरा भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं और एक व्यक्ति यहां यहां जा रहा है हरे हरे पेड़ हैं पेड़ भी बहुत सारे खुला ऐरिया है।

कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं कुछ लोग टहल रहे हैं ये पार्क की फोटो कुछ लोग ऐसे ही लड़कियां अपने इंजॉय कर रहीं--

कुछ लोग बेठे हैं बात कर रहे हैं और रास्ता दे रखा है साईड से--

और बीच से सड़क है उस साइड हा हरियाली है घास है बड़े बड़े पेड़ हैं।

यहाँ पर दो व्यक्ति बेठे है जिन जिन की शादी हो रही है वो एक दम रेडी हैं तैयार हैं।

वाईट कलर कि पोशाक पहनी है और यहाँ कुछ बर्तन भी रखे हैं।

यहाँ पे लाल रंग के झण्डे हें हरे रंग के संतरी रंग के झंडे दिखाई गये हें दोनों तरफ रेलिंग हें।

और यहाँ पे एक हिप्पो ऐसे हिप्पो ऐसा जानवर दिखाया गया है।

होटल गेट पे कर्नाटका लिखा हुआ है यहाँ नीचे पार्किंग है।

खुला जगह है और पीछे एक वाईट कलर कि बिल्डिंग है।

यहाँ एक व्यक्ति हे जिसने ब्लू कलर की शर्ट एंड ब्लेक कलर की पेंट पहनी हें पेट्रोल पम्प है साथ में यहाँ एक--

ये केन्द्रीय विद्यालय है ये रेड कलर का है यहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे-छोटे पौधे बड़ा पेड़ है।

यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए पीछे ऊपर एक बेनर है जिसपे एक लेडिज की फोटो है।

और छोटे छोटे पोधे हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।

एक लड़का खड़ा है ब्लू कलर की टी_शर्ट पहन के जिसने कैप लगाई हुई है अंदर एक येल्लो कलर की टी_शर्ट पहने हैं एक व्यक्ति --

और यहाँ पे डेकोरेशन ही चेक कर रहे है ग्रीन कलर का--

यहाँ पे ह हरयाली खूब है खूब बड़ा एक पौधा पेड़ है साथ में पत्थर भी ऊँचे ऊँचे हैं ।

यह एक शो रूम है यहाँ पे शेरवानी टंगी हुई है ऐ_सी है मर्करी है लाईट है।

यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है बड़े बड़े पेड़ बने हैं कुछ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन भी बोर्ड लगे हुए हैं।

दो लेडीजे जा रही हैं दर्शन कर रही हैं दान पत्र का लाल रंग का बॉक्स रखा है।

यहां पे बहुत सारी मछलियां हैं एक व्यक्ति बैठा तराजू ले के पीले रंग के बॉक्स में बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

हाथ भी लगा रहा है लाल रंग के कपड़े पे मछलियां--

जो वाइट कलर की चदर बिछी है इसपे एक व्यक्ति है और जो कि एक चेक वाली ब्लू कलर की चदर डाली है।

यहाँ पे लाल रंग की बैनर ऐसे लगे हुए है।

साथ में गाड़ियाँ खड़ी हुई है बहुत सारी लाइन लगा के बिल्डिंग है हरे हरे पेड़ है।

यहाँ मछलियां हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और यहाँ पे कुछ लाल लाल सी बड़ी बड़ी सी है --

जो एक भागोने में हाथ डाले है और आगे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर र--

और साथ में ग्रिल है ऑरेंज कलर की बड़े बड़े नारियल के पेड़ है।

पीले रंग कि कुछ सफेदी वाले मकान भी दिख रहे है।

ये यहाँ पानी का झरना बह रहा है गोल आकार का है।

और यहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं हरे हरे पेड़ हैं पौधे हैं गाड़ियाँ भी खड़ी हैं लोग झरने को देखते हुए जा रहे हैं।

यहाँ साइड से सड़क जा रही है चलने की और साथ में एक म रेलिंग है ईंटों वाली--